और सामने एक आईना है उसके पास दो चेयर लगी हुई है।

जिस पे एक कांच की बाटी उसमें तीन रंग की आइसक्रीम है और चम --

एक दीवाल है जो सफ़ेद रंग की है और ऊपर की दीवार हरे रंग की --

आ बहोत बड़ी पोस्टर लगी हुई है गुलाबी रंग की।

मुझे एक चित्र दिख रही है जिसमें एक सड़क है। उसके पास एक छोटी पत्थर और लाइन के खंबे हैं।

जिसमें सफेद कलर की गेट सजाई गई है और उसमें बोहो सारे रंग-बिरंगे फूल भी हैं।

सामने एक खिरकी है जिसके प्रकाश की धूप बाहर की अंदर आ रही है।